जो मिस्त्री है वो डाइरेक्सन दे रहे है कि आप ऐसे काम करो वेसे काम करो ऐसे काम अच्छा होगा और वो बता रहे है| लोग काम कर रहे हैं ।

इ-रिक्शा के पास दो लोग खड़े है| दोनों लोग ये रिक्शा खरीदने के लिए आए है रिक्शा के सामने खड़े होके फोटो खिंचवा रहे है।

नाव है नाव में दो लोग बैठे हुए हैं नाव पानी में चल रहा है तालाब की तरह लग रहा है आगे हरा-भरा वृक्ष है।

ये किसी दिस_डी_टी_एच का दुकान है| इसके बाहर मे डी_टी_एच का बोर्ड लगा हुआ है ज़ीरो पर्सेन्ट इ _एम _आई पे मिलता है ।

शादी का माहौल है लग रहा है यहाँ शादियाँ हो रही हैं लोग आ जा रहे हैं लाइट लगी हुई है।

फूल जो है सूरज मुखी का फूल बना हुआ है पार्क के ऊपर ओर यहा बंदर टाइप का मुह बना हुआ है।

किराने की दुकान है एक महिला मास्क लगाके किराने दुकान जा रही है सब्ज़ी का बाज़ार लगा हुआ है।